सामने एक टेबुल रखी हुई है जो सफ़ेद कलर की है जिसके ऊपर डिब्बा रखा हुआ है और पीछे एक कत्थई कुर्सी रखी हुई है और साइड में --

बहुत सारी बोरी रखी हुई है ऊपर हरे कलर की है और नीचे पीली कलर के सामने दीवाल पर एक काला बोर्ड लगा--

सामने एक घर दिख रहा है जिसमें अभी पुट्टी नहीं हुई है और इसके सामने गेट है जो सीढ़ियां बनी है और दोनों साइड पे--

और नीचे एक काला बड़ा पोस्टर लगा है जिसमें चाय का कप छपे हैं बर्गर छपा है और नीचे--

दिख रही है और सामने कुछ कार दिखाई दे रही है इससे --

सामने एक स्टेज है जिसमें नीचे हरा कलर है और नीचे नीला और सफेद परदा लगे हुए हैं और सामने एक--

बैठे हुए हैं पीछे एक गणेश जी की मूर्ति है जिसके चारों ओर ग्रीन पत्ते और पिंक कलर के फूल लगे हुए हैं और गुलदस्ते बन--

जो सफेद कलर की है ऊपर छत ब्लैक कलर की दिख रही है।

फिर पिंक कलर के और सफेद कलर के बहुत सारे फूलों के पौधे लगे हुए हैं और जिनके साइड में--